तस्वीर में फूल खिलता हुआ दिख रहा है।

पत्थर के ऊपर घास फूस ऊगे दिख रहे हैं पत्थर के ऊपर तमिल में कुछ लिखा बोर्ड दिख रहा है नीचे लोहे का गेट दिख रहा है एक बैठने वाली कुर्सी दिखाई दे रही है एक आद आदमी खड़ा दिख रहा है।

प्रेस के बगल में भी एक दुकान दिख रहा है जो काफी पुरानी दिख रहा है प्रिंटिंग प्रेस के दुकान के बाहर कुछ कुर्सियां दिख रहा है।

कुछ बैग स्कूल का लग रहा है कुछ बैग सामान ले जाने लग रहा है।

दुकान के अंदर दो कपड़ा टंगा दिख रहा है।

एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

इश्के अंदर बहुत सारे लकड़ी का सामान टांगा दिख रहा है।

के ऊपर एक तराजू लगा दिख रहा है।

लकड़ी का अलमारी दिख रहा है जिसके अंदर भी बहुत सारा समान लगा दिख रहा है।

के ऊपर शीशे का गेट लगा दिख रहा है।

बे के ऊपर कुछ स्टीकर चिपका दिख रहा है।

यह तस्वीर एक गिद्दी बनाने वाली मशीन का जगह का है।

जो ये करकट से बनाया गया है।

रोड के बगल में बालू गिरा दिख रहा है।

बाहर एक टेबल रखा दिख रहा है।

बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी खिड़कियां दिख रहा है।

यह एक हार्डवेयर की दुकान का तस्वीर है।

बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे खिड़की दिख रहा है।

यह तस्वीर एक नंबर प्लेट की दुकान का है।

उसके दीवाल पे सफेद कलर का है।

हाथ मे घड़ी पहना हुआ है।

दुकान का बड़ा सा डेस्क दिख रहा है।

सारे आदमी दिख रहे हैं।

के पास गोदरेज है।

टेबल दिख रहा है।

उसके साथ एक कीबोर्ड दिख रहा है।

तस्वीर में बहुत सारे स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं।

कुर्सी दिख रहा है।

बाहर ईटे फीके दिख रहे है।

दूर पहाड़ दिख रहा है।

तस्वीर में सीमेंट का दुकान दिख रहा है।

आदमी झुका दिख रहा है।

झंडा फहरता हुआ दिख रहा है।

दुकान के बाहर पलंग का पलाई दिख रहा है।

सफेद रंग से घर के पीछे एक बड़ा पेड़ दिख रहा है।

अंदर एक पंखा लगा दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मंदिर दिख रहा है।

बच्चे ने टोपी पहना है।

एक बच्ची ने गम गमछी बान्हा है।